इसे ड्राइवर चलाते है इस बस में काफी पैसेंजर भी बैठते है ।

इस सड़क के किनारे काफी बड़े-बड़े पेड़े है।

ये सड़क काफी लम्बी है। इस सड़क बहुत सी गाड़ी आती-जाती है।

इनका मन्नत मागते है इस मंदिर के किनारे पर एक घर है ।

काफी सारे पेशेंट आते हैं।